और साइड में एक ब्लू कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और नीचे अंधेरा दिखाई दे रहा है।